जो की पौधों पे गिर रहें हैं दूर पहाड़ दिख रहें हैं।

जो की डिस्प्ले में बहोत अलग अलग कपड़े लपेटे रखे गए हैं।

इसके ऊपर बॉक्सेस में सामान पैक किया हुआ है।

एक अटैची भी दिख रही है गद्दा भी लपटा हुआ दिख रहा है पिल्लोज़ दिख रहे हैं बैग दिख रहा है।

छोटे बड़े टायर्स डिस्प्ले में लगे हुए हैं।

कुछ टमाटर लाल हैं कुछ टमाटर हरे हैं।

इस कार्यालय के बाहर कुछ लोग खड़े हैं।

पहाड़ के ऊपर एक लड़का ब्लैक जीन्स और मरून टी_शर्ट पहने हुए बैठा हुआ है।

एक के पीछे स्कूल बैग टंगा हुआ है।

यहां पे लकड़ी की टेबल और कुर्सियां बनाके रखी गई--

यहां पे कुछ दुकानें दिखाई दे रही है।

ये एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

और नीचे पूरा फर्नीचर ग्रे कलर से बना हुआ है।

इस स्टेज को फूलों से और झिलमिल ल लाइटों से सजाया गया--

ये एक किचन अप्लायंसेज की दुकान दिख रही है।

ये एक भगवान का फंक्शन हो रहा--

स्टेज को फूलों से सजाया गया है।

ये एक अभयारण्य लग रहा है।

ये एक बड़ा सा गुरुद्वारे का हॉल दिख रहा है।

जहां पे ब्लू और व्हाइट से पेंट है।

पानी लहरा रहा है पानी झरने का सफेद दिख रहा है।

जहां पे लिखा हुआ है ब्लू बोर्ड पे कार वर्कशॉप इंसोरम --

पीछे रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है डीएसपी सोडा एंड कॉफी शॉप ।